यहापर बोहत सारी मालाएँ दिखाई दे रही है इन माला मे व्हाइट कलर ग्रीन कलर और रेड कलर दिखाई दे रहा है और यहापे बोहत सारी मालाएँ और भी--

बेड दिखाई दे रहा उसपे व्हाइट कलर की बेडशीट दिखाई दे रही पिल्लो दिखाई दे रहा सोफा दिखाई दे रहा टेबल दिखाई दे रही एक फ्रेम दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रही है।

चार लोग दिखाई दे रहे है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है बहुत सारे बनाना दिखाई दे रहे है अप्प्लस दिखाई दे रहे है मँगो दिखाई दे रहे है तरबूज दिखाई दे रहे है सीताफल दिखाई दे रहे है।

बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रहे इनपे पिंक पर्पल कलर दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई रहे ग्रे और ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे पानी की टंकी दिखाई दे रही है और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।

इस फ्लावर्स में ग्रीन और पिंक कलर दिखाई दे रहे--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

पक्षी दिखाई दे रहे जिनपे स्काय ब्लू पर्पल ग्रीन ऑरेंज और येल्लो कलर दिखाई दे रहा यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा जिसपे पिक कलर दिखाई दे रहा--

यहाँ पे एक चॉक्लेट कलर का केक दिखाई दे रहा है बहुत सारे टॉफीज दिखाई दे रही है बिस्किटस दिखाई दे रहे है कूकीज दिखाई दे रहे है।

पानी भरा हुआ है कार दिखाई दे रही है बस दिखाई दे रही है बस का कलर ब्लू और येल्लो दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग पे एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है।

पूल दिखाई दे रहा है बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है पत्थर्स दिखाई दे रहे है एक ग्रीन कलर दिखाई दे रहा पिंक कलर दिखाई दे रहा है स्काइ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। आस--

और यहाँ पर बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है व यहाँ पर व्हाइट और रेड कलर दिखाई दे रहा है कुच्छ ग्रीन दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैबैट दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पे एक नेट की जाली दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक पम्प दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति ने स्काइ ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी हुई है कार खड़ी दिखाई दे रही है बहुत सारी कार दिखाई देरी स्कूटी दिखाई देरी साइकल दिखा--

सारी मालाए दिखाई दे रही जिनमे व्हाइट रेड कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल दिखाई दे रहे है और--

बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे है येल्लो कलर दिखाई दे रहा है पर्पल कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

कलर दिखाई दे रहा है स्काइ ब्लू दिखाई दे रहा और भी बहुत सी कुछ दिखाई दे रहे हैयहाँ पर बहूत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे --